सभी लेन देनो को उनके पेमेंट के माध्यम से हफ्तों का अभिलेखन किया जाता है।

समझौते के निश्चित ही रूप से लिखित मे हो जिसे समझोते के विवरण --

हरीदार का एक विषय सभी हरीदर द्वारा या फिर उन मे किसी एक द्वारा चलाया जा सकते है।

के रूम में लगाया गया है इसके साथ बर्बाद हरसद ने --